इधर दो शटर दिख रहे हैं उसके बगल में दो फूल दिख रहे हैं ऊपर छपरा दिख रहा है।

यह एक रुम का दृश्य दिख रहा है रुम के अन्दर तीन लड़के खड़े है उन्होंने हाथ जोड़ा है।

एक लड़के के हाथ में फोन है इधर अनेक लड़के और हैं।

दो पेट्रोल टंकी है ऊपर एक टंकी लगा हुआ है नीचे एक घर बना हुआ है।

गुब्बारे के अंदर बहोत सारे प्लास्टिक लगे हुए हैं रस्सी दिख रहा है इधर एक सोफा दिख रहा है बगल में एक बेड है लगा हुआ है।

दो साईकिल पार्क किया हुआ हैं दीवार का कलर व्हाईट है एक कार पार्क किया हुआ हैं दीवार के ऊपर दो--

लकड़ी फेंका हुआ है एक ताला दिख रहा है रस्सी दिख रहा है तार दिख रहा है बहुत सारा।